यह एक पार्क लग रहा है और घासें पेड़ हैं।

नृत्य कर रही हैं या फिर उसको डांस बोल सकते हैं। डांस कर रही हैं। नृत्य कर रही हैं।

बाहर लड़के सब है। दो तीन पेड़ हैं। साइकिल से हैं। सड़के हैं।

तालाब जैसे बड़े बड़े पेड़ पोधे हैं।